रस्ते के बगल में मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

इस हॉल के अंदर मुझे बहुत सारा स्टूडेंट बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

सारे लोगों ने अपने दोनों हाथ अपने आंख़ें में रखा हुआ है।

वहां मुझे एक आदमी दिखाई दे रहे--

आदमी जो है यह ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहना है और जींस पहना है।

इस म्यूजियम में शीशा से ढका हुआ बहुत सारा पोर्शन है।

पीछे में स्टेज के पीछे में सफेद रंग के पर्दा से सजाया हुआ है।

पर्दे के ऊपर बलूंस भी लगाया हुआ है जो की तिरंगा कलर है।

मुझे यहां एक काउंटर दिखाई दे रहा है जो की ब्लैक रंग का है।

सामने में एक फ्लावर वाला दुकान दिखाई दे रहा है।

पीछे मे मुझे एक घर दिखाई दे रहे इटा से बना हुआ--

यह पे बैडमिंटन कोर्ट का कलर थोड़ा सा लाइट ग्रीन है।

मुझे यहां आईने भी दिखाई दे रहे हैं।

कुर्सी भी दिखाई दे दे रहे काले रंग का।

यहां मुझे चार जन दिखाई दे रहे हैं।

कुछ दूर में मुझे माउंटेंस भी दिखाई दे रहे हैं और--

बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है मुझे आसमान में बादल छाया हुआ दिख रहा है।

यह तस्वीर एक हार्डवेयर शॉप का है सामने में मुझे बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

सेल्स पर बहुत सारा सामान कार्टून पे बॉक्सेस पे रखा हुआ है।

यहां एक स्विमिंग पूल का फोटो है।

यहां पे मुझे बहुत बड़ा सा एक रथ दिखाई दे रहा है रथ को और अच्छे से सजाया हुआ है फूलों के साथ।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

यह एक क्लास रूम के तस्वीर है।

इस कमरे की दीवारों पर सफेद रंग लगाया है यहां ट्यूबलाइट भी जला हुआ है।

इस घर के पीछे में मुझे बहुत सारा पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

इस बिल्डिंग में ज्यादातर शीशा से बना हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे बहुत बड़ा सा एक बस दिखाई दे रहे जो की सफेद और लाल रंग का है।

यहां इस इंसानों के बीच एक रथ भी नजर आ रहा है।

यहां मुझे खुला जगह दिखाई दे रहा है।

दूर में मुझे दो आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे --

सड़क में मुझे बहुत सारा लोग भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां आसमान भी दिखाई दे रहे है और आसमान में बादल भी दिख रहे--

नीचे में और एक आदमी दिखाई दे रहा--

यहां मुझे खुला सड़क दिखाई दे रहे हैं।

इस क्लासरूम के अंदर बहुत सारा स्टूडेंट्स भी बैठा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक गार्डन के है।

सारे फूल खिला हुआ है।

रेस्टोरेंट का अंदर बहुत सारा टेबल चेयर दिखाई दे रहा है।

घर में मुझे दो फ्लावर पॉट्स नजर आ रहे--

पीछे में मुझे बहुत बड़ा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे तीन लोग दिखाई दे रहे हैं में भी कुछ लोग है।

सामने में मुझे चार कुर्सियां दिखाई दे रहे--